शॉर्ट्स पेहेन कर ब्लैक कलर का और व सफ़ेद रंग की टी --

अ एक आदमी भी खड़ा है और बगल में एक कुर्सी रखी हुई है। आदमी के हाथ में एक बोतल है।

और यहाँ पर टीन टीन पड़ा हुआ है।

और यहाँ पर उसके साब उससे बिड ईमारत के सामने दो कारे खड़ीं हुई है और एक से दो लोग खड़े हुए है पुरुष।

यहाँ पर पुल बना हुआ है। ऊपर फंटाइसा लिखा है।

और यहाँ पर रालीआ टेक्सटाइल लिखा हुआ है और ऊपर के तरफ भी कुछ नीचे झंडे ऊपर की तरफ एक बड़ा झंडा है लकड़ी के साथ लगाया गया है।